इस चित्र में हम एक ऑफिस को देख रहे हैं ऑफिस के चारों तरफ बैलून ही बैलून दिख रहे हैं एक शोकेस भी बना हुआ है उसमें मेन दरवाजा लगा हुआ है।

इस चित्र में हम एक उद्यान को देख रहे हैं उद्यान के चारों तरफ हमें दीवाल दिख रही है कुछ जगह हमें लोहे के गेट भी दिख रहे हैं बीच में एक कुर्सी रखी हुई है।

पार्किंग दिख रहा है आने जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है।

किनारे साइड एक बाल्टी भी रखी हुई है कुछ कपड़े भी दिख रहे हैं मुकुट भी दिख रहे हैं।

कुछ भगवान की फोटोज भी दिखा रही हैं सामने काउंटर दिख रहा है काउंटर में भी बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

अंदर मिठाई का भी सामान दिख रहा है बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी अंदर प्रवेश कर रहा है।

इस चित्र में हम फेयरडेल बैंक का ए_टी_एम देख रहे हैं इस ए_टी_ए_म के बाहर एक कांच का ग्लास लगा हुआ है अंदर ए_टी_एम भी लगा हुआ है कांच का गिलास बंद दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक साउंड बॉक्स की दुकान को देख रहे हैं इस दुकान में चारों तरफ अलमारियों में साउंड बॉक्स दिख रहे हैं जो तरह तरह की वैरायटी की और कलरफुल दिख रहे हैं।

थम्सअप स्लाइस भी दिख रहे हैं चारों साइड खाने-पीने के सामान दिख रहे हैं।

सीलिंग सफेद कलर की दिख रही है ऊपर से लाइट भी दिख रही है मेन दरवाजा भी दिख रहा है दरवाजे का हैंडल दिख रहा है।

इस चित्र में हम बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे लड़का और लड़की बैठे हुए हैं।

उसी के नीचे काली कुर्सी रखी हुई है बगल में लेटने वाली कुर्सी रखी हुई है।

किनारे साइड एक आदमी भी चलता हुआ दिख रहा है जो काली कलर की शर्ट पहना हुआ है उसी के बगल में नीली शर्ट का पहना आदमी व्यक्ति वो भी चल रहा है।

इस चित्र में हमें गाड़ियों का जमावड़ा देख रहे हैं। चारों तरफ हमें गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है। जमीन में बहोत सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई है।

किनारे साइड भी कुछ में एस_एस लिखा हुआ है कुछ में लिखा हुआ है नीचे बॉल भी कई रंग की दिख रही है सारे बेड स्टैंड में सजे हुए हैं।